मस्त शादी असन शादी होथे का मस्त सजे हवे बाइक हे रोड हे मस्त दिखत हे बादलो ह मस्त दिखत हे हरा-भरा हवे।

रंग बिरंग हरा भरा मस्त पेड़ हावे हे मस्त दिखत हावे हे पूरा चारगो सब मस्त दिखत आवे हे।

तरिया हे नीचे पानी हवे हे ऐ मस्त नारियल के पेड़ असन दिखत हवे और बड़े बड़े पद हैं एक नम्बर दिखत हे।

त रंग बिरंग बादल हे वायर हे मस्त ल लाइट असन हवे हे बड़े -बड़े पहाड़ हैं हरा भरा--